और मैंने देखा एक बाइक और दो बस जो कट्टे भोरे होते हुए जाती है यहां पे बहोत ही अच्छा व्यवस्था है।

क्योंकि ये डी_जे लाइट रहता है तो बहोत ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने डी_जे वाले भैया को पांच सौ इक्यावन रुपया बयाना दिया और मैं मंगा लिया।

मुझे जाना था मेरे मामा के घर और मैंने जा गया--

और देखा एक बहोत ही अच्छा सा दुकान था जहां पे मिठाइयां--

और सेकंड हैंड यहां पे बाइक मिलते हैं। उस दुकान का नाम है सोनू मोटर ऑटो गैरेज पुरानी मोटर साइकिलें --

और मैं गया और पूछा इसकी क्या प्राइस है। उन्होंने बताया और मैं खुश हो गया इसलिए मैं--

यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू किया और कुछ ही दिन हाल ही में बंद हो गया क्योंकि मेरे भइया के पास कुछ ही रुपया बच्चे थे अब--

यह एक कारपेट है जो यहां पे मैने खरीद कर लाया आपने घर के लिए।